और यहां एक लड़का पानी भी पी रहा है।

यह एक प्रकार का ढाबा है।

यह एक प्रकार की किताब की दुकान है।

आदमी ने एक काले रंग की टोपी --

यह एक प्रकार का खेत है।

और रंग कत्थई कत्थई सा है।

ये एक प्रकार का पार्क है।

दो घर एक बाइक दिखाई दे रही है।

यह एक प्रकार की कंप्यूटर के की दुकान है।

कुर्सी का रंग काला है।

यहां पर काफी सारे पेड़ पौधे भी है।

स्कूल का रंग लाल है।

पेड़ का रंग हरा है।

यह एक प्रकार की दुकान है।

यह एक प्रकार का डी_जे है डी_जे का रंग काला है।

यहां पर काफी सारे लोग भी है।